और बाहर बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है।

इसकी खिड़की कंच से बनी हुई है।

कुछ गाडियां भी खड़ी हुई है।

छत पर लाइट लगी हुई--

और एक व्यक्ति भी है।

जिसके चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह एक आइसक्रीम की दुकान है।

बाहर एक गाड़ी और पेड़ पौधे भी है।

जिसके अंदर कुछ मेजे और कुर्सियां भी है और कुछ व्यक्ति भी हैं।

पास में कुछ हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और कुछ पेड़ पौधे भी है।

यह एक पेंट की दुकान है।

यह एक कच्ची सड़क है।

और कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए है।

इसके आस पास कुछ घर भी है।

और कुछ पहाड़ भी दिख रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ा मैदान है।

और कुछ फूलों की माला भी है।

और कुछ घर भी हैं।

और पानी की बोतल भी है।